टेबल और चेयर है वो भूरे रंग की है और एक डेक्स भी नजर आ रहा है जहां पे रेड कलर की कुर्सी रखी गई हुई है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक हाल नजर आ रही है।

जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो गाड़ी है टू और फोर व्हीलर है।

जैसा कि आप देख सकते हैं एक बहोत बड़ी नदी नजर आ रही है।

डेकोरेटेड है जो वॉल का कलर है वो येलो और व्हाइट रेड ग्रीन मिक्स करके है डिजाइन किया गया हुआ है।

चार बाइक नजर आ रहे हैं और एक स्कूटी सफेद रंग की नजर आ रही है एक--

यहां लिखा हुआ है कैलाश कृषि यंत्र उद्योग जहां लिखा हुआ है नालीदार चादरें।

यहां पे बारह स्पीकर्स लगे हुए है इसका नाम शर्मा ऑडियो है और मोबाइल नंबर मेंशन की गई--

बहुत सारे पुरुष खड़े हैं सामने में जो की एक महिला को अवार्ड से सम्मानित किए हैं।

यहां पे बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं और पेट्रोल पंप के एम्पलॉइज भी नजर आ रहे हैं।

जैसा की आप देख सकते हैं पिक्चर में एक मकान नजर आ रहा है जो की हल्के पीले और वाइट कलर पे है।

खिड़की है जो कि पीले रंग की है और एक पुरुष खड़ा है मेन गेट पे।

ये सीमेंट और गटी की गोल बना के मशीन रखी गई हुई है।

दूसरी ओर एक पुरुष नजर आ रहे है जिन्होंने चेक शर्ट पहना हुआ है।

यहां लिखा हुआ है आल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बुक स्टेशनरी आल टाइप ऑफ़ ऑफिस एंड कंप्यूटर स्टेशनरी ।

दीवाल पीले रंग की है और बाउंड्री पे जो डिजाइन होता है वो लाल रंग की की गई हुई है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पिक्चर एक बाजार की नजर आ रही है जहां सामने में हाजीपुर जंक्शन लिखा हुआ है।

कुछ खाली एरिया नजर आ रहा है जहां पर पार्किंग टाइल्स बिछी हुई है।

और सामने से जाने का रास्ता बनाया गया जहां पे पार्किंग टाइल्स बिछी हुई है।

चर्च का जो रंग है वो हरा है पीला है और हल्का गुलाबी है।

चर्च के सामने एक बॉक्स बना के रखा गया हुआ जहां पे कुछ पोस्टर बनाए हुए हैं।

अंदर एक पुरुष नजर आ रहे हैं और चर्च के सामने में प्लस की साइन दी गई हुई--

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पिक्चर यहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है।

सीमेंट लगाया हुआ है और बहुत बड़े बड़े दौड़ते कंस्ट्रक्शन की डिजाइन बनाई गई है।

तालाब में सामने दो पक्षी भी तैरते हुए नजर आ रहे हैं जिसे हम बतख कहते हैं।